bash में command line arguments और quoting के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
* command line arguments और
* quoting quoting
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system के साथ परिचित होना चाहिए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
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 os
* gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
* shell script command line से arguments स्वीकार करता है
* एक argument उसको बुलाये जाने के समय program को passed किया जाता है
* arguments की कोई भी संख्या program को passed की जा सकती है
अब अपने keyboard पर एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
मैंने arg sh named file में code पहले ही लिख लिया है
terminal पर टाइप करके मैं यह file खोलता हूँ
gedit space arg sh space & ampersand sign
हम इस एम्परसेंड का उपयोग prompt को खाली करने के लिए करते हैं
अब enter दबाएं
text editor खुलता है
अब मैं code समझाता हूँ
यह shenbang line है
यह line zeroth argument print करेगी
यहाँ dollar zero shell script के name को print करेगा
परिणामस्वरूप इसका मतलब है zeroth argument स्वमं program का name है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
terminal पर जाते हैं
पहले निम्न टाइप करके file को निष्पादन के योग्य बनाते हैं
chmod space plus x space arg sh
enter दबाएं
arg type करें dot slash arg sh
enter दबाएं
आउटपुट इस प्रकार दिखता है: zeroth argument argsh है
अब अपने editor पर वापस आते हैं और यहाँ प्रदर्शित तीन लाइनें type करें
dollar 1 command line से program को passed किये हुए पहले argument को दर्शाता है
dollar 2 program को passed किये गए दूसरे argument को दर्शाता है
और dollar 3 तीसरे argument को दर्शाता है
अब सेव पर क्लिक करते हैं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
अप arrow की दबाएं enter दबाएं
हम देखते हैं कि zeroth argument printed हुआ है
लेकिन पहला दूसरा और तीसरा arguments रिक्त है
ऐसा इसलिए है क्योंकि command line arguments निष्पादन के समय दिए जाते हैं
अतः अप arrow की दबाएं और type करें: sunday monday और tuesday
enter दबाएं
आप देख सकते हैं कि पहले तीसरे arguments sunday monday और tuesday हैं
अब अपने editor पर वापस आते हैं enter दबाएं
अब यहाँ प्रदर्शित line type करें
dollar 12 बारहवाँ यानी twelfth argument दर्शाता है
9 से बड़ा एक argument लिखने के लिए हमें curly brackets प्रयोग करने की ज़रुरत है
अन्यथा bash केवल ten s place यानी दहाई स्थान के integer का argument लेगा
और आप अपेक्षित output प्राप्त नहीं करेंगे
अब सेव पर click करें
अब program को निष्पादित करते हैं
terminal खोलें
अब मैं prompt को खाली करता हूँ
अब program को 12 या 13 arguments देने की ज़रुरत है
इसलिए type करें dot slash arg sh space 1से 13 enter दबाएं
आप देख सकते हैं कि बरहवाँ argument 12 है
अपने editor पर वापस आते हैं
और यहां प्रदर्शित line type करें
$#dollar hash आर्ग्युमेन्ट्स की कुल संख्या देता है जो program को passed किये गए हैं
अब सेव पर click करें
अब निष्पादित करते हैं
terminal खोलें
अब निष्पादित करते हैं अप arrow की दबाएं और enter दबाएं
हम देख सकते हैं कि total arguments 13 हैं
अब editor पर जाते हैं
enter दबाएं और यहाँ प्रदर्शित लाइनें type करें
$* dollar asterix सारे arguments को एक line में print करेगा
हम एक सरल for loop की मदद से यह जांचेंगे
हम निष्पादन के समय इस for loop का विश्लेषण करेंगे
अब save पर click करें terminal पर जाते हैं
अब मैं prompt को खाली करता हूँ
arg type करें dot slash arg sh space sunday monday और tuesday
enter दबाएं
total arguments 3 हैं जैसा आप देख सकते हैं कि हमने अपने program में 3 arguments passed किये हैं
जैसा पहले बताया है $* एक line में arguments print करेगा
और यह for loop के लिए output है
हम देखते हैं कि सारे arguments एक line में printed किये गए हैं
अब अपने program पर वापस जाते हैं और यहाँ प्रदर्शित लाइनें type करें
$@dollar at भी सारे arguments को print करेगा
हालाँकि इस समय प्रत्येक argument अलग line में printed किया जायेगा
यह अन्य for loop है जो प्रत्येक argument को अलग line में print करेगा
अब देखते हैं कैसे सेव पर click करें
terminal पर आते हैं
अप arrow की दबाएं
enter दबाएं आप अंतर देख सकते हैं
ये $@ द्वारा printed किये गए arguments हैं
$@ प्रत्येक argument को अलग line में prints करता है
यह दूसरे for loop के लिए output है
अब bash में quoting quoting पर जाते हैं
slides पर जाएँ
quotes तीन प्रकार के होते हैं
double quote quote single quote
backslash backslash * double quote variables और commands की value को बदलता है
* उदाहरण echo username is $user
* यह system का यूज़रनेम दर्शाता है
terminal पर जाएँ
अब मैं prompt को खाली करता हूँ
double type करें echo space double quotes में username is dollar user बड़े अक्षरों में
enter दबाएं system का यूज़रनेम printed किया गया है
output आपके system के अनुसार बदलेगा
अब slides पर वापस जाते हैं
* single quotes दी गयी string के प्रत्येक character के शाब्दिक अर्थ को बनाये रखता है
* यह सभी characters के विशेष अर्थ को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है
terminal खोलें
type करें echo space single quote में username is dollar user बड़े अक्षरों में
enter दबाएं
output username is $user है
इस उदाहरण में यह सारे characters को prints करता है जो single quotes में दिखते हैं
यह variable $user की value को नहीं बदलता है
अपनी slides पर वापस आते हैं
* backslash single character से विशेष अर्थ को हटाता है
* यह bash में escape character की तरह प्रयोग होता है
terminal पर जाएँ
double type करें echo space double quote में username is backslash dollar user बड़े अक्षरों में
चूँकि हमने double quotes लगाये हैं हम उम्मीद करते हैं कि echo command यूज़रनेम दर्शायेगा
अब इस command की कोशिश करते हैं enter दबाएं
output username is $user है
इस उदाहरण में backslash $ dollar चिन्ह के विशेष अर्थ को हटाता है
$user को बिना किसी विशेष कार्यात्मकता के string की तरह समझा जाता है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
अपनी slides पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
* command line arguments
* double quote single quote और backslash की कार्यात्मकता
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
यह भारत सरकार के एम एच आर डी के आई सी टी माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद